यह एक गाड़ी है जिसमे आदमी माल लोड कर रहे है व्हाइट कलर का बोरा येलो कलर का बोरा है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें छे सात पंखे लगे हुए हैं।

एक लेडिस खड़े हैं और दो जेंट्स खड़े हैं।

और काउंटर का कलर येलो कलर को देखने को मिल रहा है।

का बहुत अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है।

छोटे छोटे पेड़ पौधे साइड मे देखने को मिल रहा है।

फूल का कटोरा रखा हुआ है।

चाय की दुकान है चाय के बहुत सारे सामान रखे हुए--